यहाँ पर एक गैराज बना हुआ है जहाँ पे बहुत सी--

यहाँ पे एक नाई एक व्यक्ति के बालो को काट रहा है।

यहाँ पर बहुत ही सुन्दर -सा एक पहाड़ी दिखाई दे रहा है जहाँ पर बहुत सारे लोग हर दिन घूमने के लिए आते रहते हैं।

यहाँ पे एक लड़की के पीठ मे एक ब्लैक कलर का बैग रखा हुआ है।

यहाँ सभी बच्चे रेड कलर की कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए है।

बड़े-बड़े पेड़ भी लगे है।

यहाँ बैठने के लिए कुर्सियाँ भी रखी हुई है। यहाँ पर बीच मे एक टायर रखा हुआ है।